हल्दी यहाँ पे बहुत सारा सामान रखा हुआ है यहाँ पे बहुत सारे --

यह एक मिठाई की दुकान है यहाँ पे लड्डू है कलाखन के लड्डू गुलाब जामुन पेड़े कलाखन रतगुले गुलाब जामुन --

जलेबी पिस्ता बहोत सारे ये शेल्फ में यहां पे समान रखा ऊपर ब्रेड के पैकेटा टोस्ट के पैकेटा --

ये एक ये पार्क है और यहां पे एक बड़ीसी--

यह एक बड़ा सा रूम दिख रहा है।

ये एगो बड़ी सी बिल्डिंग है तीन चार माले की ओर उसके ऊपर बहोत सारे लाइटों के लड़ा डाले गए हैं।